ये हमारे इलाके का एक खदान है ये इलाका बोहोत ही बड़ा है यहाँ पे ढेर सारे छोटे-छोटे चट्टान भी है यहाँ पर कोयला निकाला जाता है।

ए हमारे इलाके का एक हॉस्पिटल का केबिन है ए केबिन ज्यादा बड़ा नहीं है इस केबिन के दीवारों में ढेर सारे --

यहाँ हमारे इलाका का एक मंदिर है यहाँ पर शानिदेव का एक मूर्ति भी है यह मूर्ति बहुत ही सुन्दर है यहाँ पर --

यह हमारे इलाका का एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर बड़ा बड़ा पहाड़ है। यह पहाड़ थोडा ग्रे कलर का हो चूका है।

इसलिए बच्चा लोग यहाँ पर खेल नही पा रहा है।